समंदर है जिसमें बहुत गहरे पानी है छोटे-छोटे पौधे हैं पेड़ है ।

एक लड़का को दिखाया गया है जो सेंडोगेंजी और जींस पहने हुए वो सेंडोगिंजी को उठाए हुए खड़े --

रेड कलर के पर्दे लगे हुए हैं वॉल पर ऑरेंज कलर की--

एक मेज टाइप का रखा हुआ है जिस पर एक बाजा का डब्बा रखा गया है दो चेयर्स है नीचे--

टाइल्स मार्बल बिछे हुए हैं एक और चेयर बगल पे है जिसमें कैश काउंटर टाइप का बनाया गया है उसके नीच को--

आसमान दिखाया गया है पूरा मॉर्निंग का टाइम --

तालाव पर कुछ कचड़े-वचड़े फेंके साइड में ग्राउंड टाइप का बनाया गया है जिसमें कुछ छोटे-छोटे घास है पेड़ पौधे हैं बगल में --

एक मशीन का शॉप टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे चाबी वाभी लटके हुए हैं बहुत सारे ताले वाले लटके हुए हैं ।

चाबी वाबी का कुछ पिक्चर विक्चर बनाया गया है ।

एक मंदिर टाइप का दिखाया गया है जिस पर एकअअ गिरि लोहे के गिरिल टाइप का बनाया गया है माटी का रास्ता टाइप का दिखाया गया --

बहुत बड़े-बड़े पहाड़ टाइप के दिखाए गए हैं जिससे बहुत घने-घने जंगल है कुछ बड़े-बड़े ब्रिच भिह --

लोहे का पाइप वाइप लगाया गया है सीढ़ी है सीढ़ी पर भी लाइटिंग वाइटिंग का काम है गमलों पे भी कुछ--

साइड साइड में पौधे हैं बगल में एक गार्डन टाइप का है जिसमें बहुत छोटे-छोटे घास वास है ।

एक कारखाना पोल्टी फार्म टाइप का दिखाया गया है जिस पर बहुत बड़े-बड़े कूड वूड रखे गए हैं कूड प--

एक रिक्शा दिखाया गया है रिक्शा को डिजाइन दार किए गए हैं पूरी तरह से उसे डिजाइन करके रखा गया है ऊपर पे--

बड़े-बड़े मशीन है डंबल्स है एक्सरसाइज करने के मशीन वशीन है दो-तीन चेयर्स ख रखे हुए हैं वाइट कलर पर ह--

एक बड़ा सा चक्का है जिसे कलर किया गया है येलो में ब्लैक में--

एक बड़ा सा पोल दिखाया जा रहा है पोल पर लाइट वाइट दिखाए जा रहे कुछ छोटे-छोटे पौधे दिखाए जा र--

बॉल भी बहुत कलर के रेड पर है ऑरेंज पर है कुछ वाइट पर है कुछ पिंक पर है और रेड रेड वाइट वाइट बॉर्डर्स किए हुए हैं ।

एक घर दिखाया गया है फ्लैट ब्लैट टाइप का और फ्लैट दिखाए गए हैं कुछ कारखाने दिखाए गए हैं कारखाने से ऊपर से धुआ हुआ निकल रहा है एक बहुत बड़ा स--

उफ्लाकारखाने के ऊपर पाइप लगा हुआ है ।

और रात का समय उमय दिखाया जा रहा बहुत सारे विंडोज दिखाए जा रहे दरवाजे दिखाए जा र--

छोटा सा गैरेज टाइप का दिखाया गया है जिस पर एक बहुत बड़ा सा मशीन है मशीन पर कुछ पंप वम तार-वार लगाए गए हैं ।

मार्शल आर्ट कर रहे हैं हम वो बेल्ट बेल्ट लगाए हैं वाइट कलर के पहने हुए हैं सभी और कोई--

कुछ ऑरेंज में कुछ पिंक में उसमें हरे हरे घास टाइप के बनाए गए हैं एक गार्ड है जो चेयर लिए हुए बाहर खड़ा --

साइड में एक रास्ता टाइप का बनाया गया है दोनों रास्ते में भी कुछ छोटे-छोटे पौधे-वौधे लगाए गए हैं एक बहुत बड़ा सा लोहे का--

एक विंडो टाइप का दिखाया जा रहा है बगल में एक बैंक ट है ।

अअ डार्क घर का बैंक है जिस पर चिट्ठी विट्ठी रखने के लिए बाहर पर एक मशीन टाइप का बनाया गया चप्पल उप्पल रखे गए हैं ।

बहुत मट्टी-वट्टी है साइड में बहुत बीच-बीच में--

एक बहुत बड़ा तालाव टाइप का दिखाया गया है जिसमें माटी का रास्ता टाइप का बनाया गया है ।

और साइड में कुछ मट्टी के चट्टान वट्टान टाइप के बन गए हैं जिसमें कुछ पौधे-वौधे हैं साइड में एक खेत टाइप का बनाया गया है जो काफी सूखा सूखा है ।

सीढ़ी टाइप का ग्रिल टाइप का बनाया गया दो-तीन आदमी खड़े हैं बहुत सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं एक और--

एक बच्चा को दिखाया गया जो पेड़ पर खड़ा है।

एक बहुत बड़ा माटी का रास्ता टाइप का दिखाया गया है कुछ सूखे-सूखे वृक्ष दिखाए गए हैं कुछ बड़े-बड़े हरे-हरे वृक्ष दिखाए गए --

कुछ पोल वोल दिखाए गए हैं कुछ रास्ते-वास्ते दिखाए गए हैं।